और एक एक लड़की नजर आ रही बोहत सारे आदमी नज़र आ रहे हैं और बेंच पे बोहत सारे पेपर्स रखे हुए हैं डब्बे रखे हुए हैं बॉटल्स रखे हुए हैं पानी के एक लैपटॉप है।

यहाँ पे दो लड़की और दो लड़का डांस करते हुए नजर आ रहे है नीचे मे।

उम्म दूसरी तरफ एक और अ दिखाई दे रही है।